ये एक टोय शॉप दिख रही है जिसमे बहुत सारे खिलौने दिख रहे है। एक दो डमरू रखे हुए दिख रहे है।

ये एक बहुत बड़ा मेला दिख रहा है जिसमे तीन जॉइन्ट व्हील झूले दिख रहे है ड्रैगन झूला दिख रहा है एक बहोत सारे लोग दिख रहे है।

बहुत सारे लोग दिख रहे है जो की वाइट कलर की कुर्सी पे बैठे है कुछ खड़े है डी.जे दिख रहे है बादल दिख रहे है पेड़ दिख रहे है।

टेबल रखी हुई दिख रही ब्रॉउन कलर की। लाइट के वायर दिख रहे है। एक ब्रॉउन कलर की मशीन दिख रही है।

ये एक बस स्टॉप दिख रहा है जहाँ पे तीन बस दिख रही है एक ग्रीन कलर की बस है दो व्हाइट कलर की है।

बहुत सारे एप्पल रखे है ऑरेंज रखे हुए है। लाइट जलती हुई दिख रही है। एक टेबल बनी हुई है उसमे रेड कलर का--

ये एक बुक_शॉप दिक रही है जहाँ पे बोहत सारी लकड़ी की अलमारी बनी हैं उसमें बोहत सारी बुक रखी हैं कुछ पैन रखे हैं एक जेन्ट्स बैठा हुआ है।

ये एक गार्डन दिख रहा है जिसमे बहुत सारी फिसल पट्टी दिख रही है। कुछ झूले दिख रहे है। टेबल लगी हुई दिख रही है ब्लेक कलर की।

ये एक बिल्डिंग बन रही है यहाँ पे बहुत सारे पिलर दिख रहे है उसपे लोहे के सरिये भी दिख रहे है एक कुर्सी रखी हुई दिख रही है।

येलो कलर की टी-शर्ट पहनी है साइड मे एक ब्लेक कलर का कुछ रखा है स्विच बोर्ड दिख रहा है झण्डा रखा हुआ है लाइट जलती हुई दिख रही है ऊपर एक खिड़की दिख र --

ये एक मेडिकल शॉप दिख रही है जिसमे बहुत सारी लकड़ी के अलमारी बनी हुई है उसमे अलग-अलग समान बना हुआ है।

दो जेन्ट्स खड़े हुए दिख रहे है। एक व्हाइट कलर का काउन्टर दिख रहा है उस पे बोहोत सारे पेन रखे हुए है। कुछ बुक रखी है। एक व्हाइट कलर की बाइक भी दिख रही है।